सामने दो व्यक्ति भी खड़े हुए हैं।

सभी फ्लावर पॉट में बहोत सुंदर सुंदर फूल है।

यहां काफी सारी मिट्टी भी है।

यहां हर तरीके के खिलौने भी--

और दो व्हीकल और खड़े हुए हैं।

बहोत सुंदर सुंदर फूड भी उगे हुए।

यह बच्चा अपनी फोटो खिंचवा रहा है।

कार भी है और यहां दो बाइक भी है।

जी का कलर ग्रे ब्राउन और क्रीम कल--

यहां कुछ और भी सामान पड़ा हुआ--

कई कार छोटी हैं और कई कार बड़ी हैं।

यह किसी घर की छत पर--

दो पर्दे भी लगे हुए हैं।

यह चारों लड़कियां डांस कर रही है।

यहां एक बोर्ड भी लगा हुआ हैं।